उन पर सेंटर दिखाई दे रहे हैं घर के।

दिखाई दे रही है यहां पर एक महाराणा प्रताप की--

और पीछे एक बस दिखाई दे रही है ये रोड का दृश्य हैं और भी दुकानें दिखाई दे रही है पीछे --

बड़ा हॉल टाइप कुछ है वो पूरा का पूरा सजा हुआ है गुब्बारों से।

वहां पर बहुत सारी भीड़ भी हैं और एक--